यह एक मैदान है। यह मैदान काफी बड़ी है। इस मैदान में छोटे-छोटे पेड़ भी हैं।

यह एक पोल्ट्री फॉर्म है | यहाँ पर छोटे छोटे बहुत से पोल्ट्री है यहाँ पोल्ट्री को चारा दाना पानी दिया जाता है ।

यह आदमी धान या गेहूं का पिसाई कर रहें यहाँ पर बहुत से आदमी हैं। यहाँ बहुत बोरा भी है। यह मैदान काफ़ी आकर --